जो की लोहे की है और अंदर की तरफ तख्त पड़े हैं उनके आसपास काफी सारी प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई है।

आगे की तरफ एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की पैन्ट पहन रखी है और वो मोबाइल चला रहा है।

इसके पास में एक मीटर लगा हुआ है और लोहे की जाली लगी हुई है।

जिसके ऊपर टीन पड़ी हुई है आगे की तरफ काफी पिलर लगे हुए हैं।

दीवार पर एक पेंटिंग बनी है जिसके ऊपर लिखा है मैं भी स्वछता वारियर ।

जिनके अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ है पाइप का और ऊपर की तरफ काउंटर बना हुआ है।

दुकान पे काफी सारी लाइट लगी हुई है जो की सफेद और ऑरेंज कलर में चमक रही है।

और आगे की तरफ एक लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने नीले रंग की शर्ट पहन रखी है।

बहुत जड़े पहाड़ के ऊपर लपेटी गई है और पीछे की तरफ बहुत सारी घास लगी हुई है।

दुकान के बाहर एक प्लास्टिक की सफेद रंग की कुर्सी पड़ी हुई है और अंदर की तरफ एक टंकी रखी हुई है।

और उसके पास में एक लोहे का स्टूल पड़ा हुआ है जिसके पास एक आदमी खड़ा --

उसके ऊपर काले रंग की पन्नी लिपटी गई है ऊपर की तरफ लोहे का टीन पड़ा हुआ है रोड पे काफी सारे बाइक खड़े हुए हैं और काफी लोग पैदल चल रहे हैं।

जीसमें से काफी लोगों ने गुलाबी रंग के जूते और काफी बच्चों ने नीले नीले रंग के जूते पहन रखे हैं।

और चार आदमी और एक औरत खड़ी हुई है पीछे की तरफ एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है।

कमरे के पास एक पिलर है सफेद रंग का अंदर से एक आदमी आ रहा है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है।